यहाँ पे बहुत ब मोटे एक पेड़ है। पेड़ के आस-पास बहुत सारे गाड़ियां खड़े हैं और सामने एक लाइन का पोल खम्भा गड़ा है और--

बहुत सामान भी रखा हुआ है कैलकुलेटर कैंची कलम पेपर रखे हुए हैं और एक लड़का फोटो ले के खड़े --